यह एक मंदिर है यह मंदिर बहुत ही अच्छे हैं इसमें एक भी है मंदिर के बगल में काफी पेड़-पौधे हैं ।

यह एक घर है यहाँ एक मिस्त्री हाथ में ड्रिल मशीन लिए जमीन में छेदा कर रहें हैं ।

पानी से खुद रहे है । अभी आवा जाहि बंद हो गई है ।

यह एक साइकिल दूकान है। यहाँ महाराज जी का दूकान है। यह दूकान सैनिक साइकिल --

यह एक जंगल है इस जंगल में काफी बड़े-बड़े पेड़-पौधे है यह जंगल बहुत घना जंगल है ।

यह एक बाजार है यहाँ काफी भीड़ है बहुत सारे दूकान लगे हुए हैं यहाँ बहुत दूर-दूर से लोग बाजार करने आते हैं।

यहाँ प्रशिक्षण किये जाते हैं यहाँ प्रशिक्षण के लिए बहुत सारे लोग आते हैं यह --